और नीचे एक काले कलर का गेट लगा हुआ है और ऊपर की फ्लैट कुछ काले कलर जाली लगी हुई नज़र आ--

एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जहाँ पे पीले कलर का पर्दा लगा हुआ नज़र आ रहा--

यहाँ एक जीम दिखाई दे रही है जहाँ पे लाल कलर की शर्ट में--

वो गेट बड़ा-सा है जहाँ काले कलर गेट और उसके पास में एक गाड़ी भी नज़र आ रही है एक सफेद कलर की कुर्ते पैजामे का आदमी खड़ा है।

एक चर्च दिखाई दे रहा है जहाँ पे बहोत सारे लोग नीचे बैठ कर--

कपड़े से सजा हुआ है और आस-पास हरे-नीले कलर के फूल लगे हुए है।